यहाँ एक ग्राउंड में ऑटो खड़ा हुआ है। सामने कुछ कार खड़ी हुई हैं। बिजली के खंबे दिख रहे --

अंदर कुछ फ्लावर लगी हुई दिख रहे है मकान की कुछ खड़कियाँ दिख रही हैं ।

यहाँ एक मकान दिख रहा है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है नीचे उसके कुछ पिलर दिख रहे हैं।